चित्र में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

और साइड शीशा भी दिखाई दे रहा है पीछे कुछ हरे-भरे पौधे हैं फर्सत साफ़ है।

इस चित्र में हमें एक एच.दी.एफ.सी. बैंक का ऑफिस दिखाई दे रहा है कुछ ऊपर ये ए.सी. का दिखाई दे रही है।

पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में हमें एक घर दिखाई दे रहा है और एक लड़का बाल कटाए हुए खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक दुकान दिखाई दे रही है इसमे एक आदमी फोन से बात कर रहा है दो आदमी खड़े हुए अलमारी ए --

दुकान के अंदर बहोत सी किताबे रखी हुई है नीचे का फर्श हरे कलर का है।

और सजावट किया हुआ है नीचे का फ़र्श साफ है पीछे कुछ पौधे है।